बहुत सारा बहुत सुंदर अच्छा मंदिल बना हुआ है बहुत अच्छा बहुत अच्छा।

सब झुलवा झुलता है येलो कलैया कलर है लाल कलर है पीला कलर है।

बहोत पंखा लगा हुआ है तीन चार पाँच छ सात ओ लगा हुआ है पंखा।